हमें यहाँ पर मुझे एक जोड़ी चप्पल दिखाई दे रही है यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी तरह से पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है यहाँ पर मुझे बहोत अच्छी टाइल्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे कुछ भीड़ -भाड़ जयादा होती हुई दिखाई दे रही यहाँ पर कुछ खंभे लगे हुए है जहाँ पर मुझे तार दि --

यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छे से बिल्डिंग काम लगा हुवा है यहाँ पे देखा जाए बहुत भीड़ भाड़ है।